एक मंदिर बहुत सुंदर है और बन रहा है आधा मंदिर बना हुआ है अभी आधा नहीं बना हुआ है।

यहाँ पर बड़े-बड़े डम्बल रखे हुए हैं। जिम करने के और यहाँं पर एक फोटो बंदे की है और यहाँ पर एक लड़की है दो लड़कियों मे।

तिरंगा लहराने वाला और कुछ बोहोत सारे सामान खिड़कियाँ हैं उसमें।

ये श्री कृष्ण महाविधालय है। यहाँ दो गेट लगे हुए हैं वहाँं बड़े से --

जीप खड़ी हुई है गाड़ी के पास इतने खड़े होते है वहाँ पर --